और एक तरफ आप देख सकते हो चेयर है लकड़ी की और कुछ पेटियां कुछ बड़ी बड़ी पॉलिथीन पड़ी हुई है वहां पर और यह जो फिटिंग देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो कर किया हुआ है।

आप फोन करके पता कर सकते हो ऑर्डर मंगवा सकते हो।

वो कुल्लर पंखे आप दुकान के अंदर भी देख सकते हो।

आगे आप दूसरी शॉप पर देखोगे बैंगल्स लगे हुए हैं कपड़े हैं चश्मे हैं आप यहां से बहुत कुछ ले सकते हो।

आप इसमें अलग अलग तरह के वॉश बेसिन ये सब अ शॉप पे देख सकते हो।

ये अपना टी_शर्ट ऊपर करके अपनी फोटो ले रहा है और आप देख सकते हो पीछे इसके लाइट भी ऑन है।

ये फोटो एक शादी के फंक्शन का फोटो है जहां पर पानी का टैंकर भी है और कुछ लेडीज और जेंट्स मिलकर इसमें खाना बना रहे है।

और इसके साथ में ही आप देख सकते हो एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसकी वजह से लोगों का ज्यादा आना जाना है।

मिक्स अचार मिलेगा नींबू का अचार मिलेगा आम का मिलेगा कमल ककड़ी का मिलेगा।

आप देख सकते हो इधर उधर उसके साथ सभी व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं और इधर उधर लोग खड़े भीं हैं अपनी जगह पे चेयर पे।

और जो देख सकते हो एक तरफ रेड्डी वाला एक तरफ एक बुजुर्ग आदमी हैं जो साइकिल से रोड क्रॉस कर रहे हैं।

ये फोटो एक स्कूल के रूम का फोटो है जिसमें डेकोरेशन की हुई है बोर्ड पे न्यू क्लास की।

यह रोहतक में भगवती टाइल्स एंड सेनेटरी की शॉप है।